बाहर में कुछ सांगवान पेड़ लगाया हुआ है।

चेयर टेबल भी दिख रहा है।

टेबल के ऊपर में फ्लावर भी सजाते हुए नजर आ रहा है।

और इस बिल्डिंग में कालिखो पुल मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट भी लिखा हुआ है।

लोहा से बाउंड्री भी बनाया हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे मंदिर दिखाई दे रहा है।

में बनाया हुआ है व्हाइट कल--

साइड में बहोत ज्यादा गाड़ी लोग भी पार्किंग कीया देखने को मिला है।

साइड में एक छोटा घर बना हुआ भी नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक कंपाउंड दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे हाईवे दिखाई दे रहा है।

साइन बोर्ड के सामने में एक छोटा सा कोई बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे गार्डन दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे सुंदर सा दो छोटे छोटे घर देखने को मिल रहा है।

सीढ़ी के साइड साइड में फुल पॉट भी रखा हुआ है।

छोटा सा घर बनाया हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे सुंदर सा पानी का जगह देखने को मिला है।

उनके अंदर बहोत सारा खिलौना रखा हुआ है।

बैठने के लिए टेबल चेयर भी रखा गया है।

अने टूकटूक गारी और आदमी भी चलते हुए नजर आ रहा है।

रेस्टोरेंट के बाहर में फेंसिंग लगाया हुआ नजर आ रहा है।

इनमे भी रखा हुआ नजर आ रहा है।

घास के ऊपर एक बैंबू देखने को मिला है।

बिल्डिंग के ऊपर मे दो बड़ा सा टैंक्स भी रखा हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे चिल्ड्रन पार्क देखने को मिला है।

यहां में मुझे सुंदर सा बड़ा गेट दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे घर देखने को मिला है।

घर के बाहर में छाता भी लटकाया हुआ है।

बहोत ज्यादा आदमी लोग भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

और एक लड़का मशीन इस्तेमाल करते हुए दिख रहा है।